और बहुत सारे रिक्शे खड़े हैं.

सामने एक बिजली का खंभा है जिसमें होर्डिंग लगा हुआ है.

सामने एक बास्केटबॉल की नेट है।

जिसमें एक स्टेज बनाई हुई है।

तथा कुछ गमले आगे रखी गई है.

रोड के किनारे बहुत सारे पेड़ हैं।

बिल्डिंग में कुछ ऐ सी लगी हुई है.

और कुछ व्यक्ति बस के ऊपर से समान उतार रहा है.

सामने कुछ टेबले लगी हुई है.

यह एक वाइट कलर की बिल्डिंग है जिसके सामने दो कार गाड़ी है।